जिसमे एक एल.ई.डी. टी.वी. दिख रहा है।

जिसने अभी सफ़ेद शूज और उम रेड कलर की बनियान पहन रखी है ।

यहाँ पर एक सुजुकी का वाइट कलर का टैक्सी खड़ा हुआ है |